आदि फल लगे हुए है और ये फल सभी अलग अलग रैक में लगे हुए है इनके ऊपर से एक हरे रंग की बेल जा रही है।

यहाँ पर यह किसी विवाह एवम जन्मदिन पार्टी का खाने का आयोजन है।

मंदिर को अच्छे सुसज्जित तरीके से सजाया गया है मंदिर के सबसे ऊपर उसकी चोटी बनी हुई है।

मानव द्वारा निर्मित झरना बना हुआ है जिसमें से काफी ऊँचाई से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है।

यहाँ पर दोनों तरफ आती और जाती हुई सड़क है एक तरफ लोग आ रहे है और एक तरफ लोग जा रहे है।